एक बुड्ढा आदमी भी हवय जो की जा रहा हैं आसपास पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

है इसका कलर व्हाइट है यहाँ मशीने रखी हुई है इससे पेट्रोल और डीजल भरा जाता है गाड़ियों मे यहाँ पे कुछ लोग है जो की काम करते है यहाँ पे कुछ स्कूडी स्कुटी और बाइक है जिसे--

ये एक कोचिंग सेण्टर है जहाँ पर कोचिंग मैं काफी सरे बच्चे पढ़ रहे है बैठे हुए है किताबे निकले हुए है। और--

ये एक पेट्रोल पम्प है इसका कलर वाईट है यहाँ साइड में पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पर टेक्सी खड़ी हुई हैंगी यलो एंड ब्लैक कलर की कुछ बाइक से लोग जा रहे है।

कार खड़ी हुई है और एक दौ बाइक वगैरह खड़ी है पीछे ऑफिस बना हुआ है बैठने के लिए।

एक पेट्रोल पंप है व्हाइट कलर का ऊपर की पट्टी का कलर ऑरेंज एंड ब्लू है यहाँ पर पेड़-पौधे लगे हुए है यहाँ पर पोस्टर लगे हुए है कार है गी व्हाइट कलर की काफी बड़ा ग्राउंड डला हुआ है।